और अ कुछ बेनर भी लगी हुई हे और ये बी मतलब सिर की एक बू फोटो भी हे।

यहाँ पर एक बहोत सारे पेड़े हैं। पेड़ो पर एक रवि है। मतलब कलर गुलाबी कलर का कलर है।

वो एक प्रोग्राम में देखिए बगल में लाल कलर की पट्टी भी लगी हुई है और ये लाल कलर की व्हाइट कलर की ब्लैक कलर की बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पर एक हरे कलर का एक पेड़ भी है और ये टैक्सी भी लगी है यहाँ पर बहोत सारे आदमी है और --

और बोलट के आगे एक और बोलट रखा हुआ और बगल मे एक गाड़ी भी रखी हुई हें ऊपर एक हरे कलर की पन्नी सी भी डली हुई हें।